यह रोड जो है वो बहुत अच्छी मह सरकार ने बनाई है। योगी आदित्यनाथ ने बनाई है और यह देखने में काफी सुंदर और बड़ा है और बहुत बढ़िया रोड है कुल मिला --

कॉलेज है यह जमुई जे.एम यू.आई. कॉलेज में बहुत ही बढ़िया शिक्षा दी जाती है बच्चों को यह कॉलेज बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज और यहाँ बढ़िया लाइब्रेरी है।